मुझे एक आयन का गेट भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लगभग आठ आदमी दिख रहे हैं।

मुझे एक ट्रैफिक पुलिस भी नजर आ रहा है।

मुझे एक क्यू आर कोड का स्कैनर भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लगभग चार आदमी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा ब्रिज नजर आ रहा है।

एक खिड़की दिख रहा है जो की ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का पर्दा से ढका हुआ है।

तस्वीर के दोनों तरफ कई बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

एक ट्रांसपेरेंट कलर की पाइप भी दिख रही है।

इस तस्वीर के बहिनी तरफ एक छोटा सा डायनिंग एरिया भी बना हुआ है।

एक व्यक्ति ने बैग भी पैहना हुआ है।

सभी कैबिनेट चीजों से भरी हुई है।

एक लड़की ने व्हाइट कलर का मास्क पहने हुआ है।

पहाड़ पूरे पेड़ो से ढका हुआ है।